ये एक पेट्रोल पंप हैं पेट्रोल पंप का रंग सफेद हैं पास में एक सीडी लगी हुई हैं।

काले और सफ़ेद रंग का दरवाजा बना हुआ है पेट्रोल पम्प का रंग सफ़ेद है ऊपर --

लाल और नीले रंग से पेंट किया हुआ हैं ओर पास में हरे हरे गास पेड़ पोधे--

दाने है और एक बड़ा पेड़ है सामने खाली रस्ता है।

सपेद रंग के पर्दे भी है और वहा छोटे छोटे पर्दे भी लगे--

अ और दोनों साइड में दो छोटे छोटे पेड़ है।

एक टंकी बनी हुई है काले कलर की छत जो छत पर रखा हुआ है।

कार जिसका रंग काला है और उसके दोनों पईये खुले--

यह इंजन का सामान भी खुला हुआ है।

एक बच्चा है जो फूलो में पानी दे रहा है और बच्चे ने लाल कलर का टीशर्ट --

ये एक मिठाई कि दुकान है मिठाई के दुकान पर एक रेड कलर का फ्रीजर रखा हुआ है।

टेबल है जहां एक कैंची रखा हुआ है एक प्लेट है ऊपर पंखा लगा हुआ है।

अ को अ सलवार कमीज पेहेन रखा है उपर पंखा चल रहा है और लाइटे भी जल रही--

सामने कुछ दुकाने दिखाई दे रही है उपर आसमान दिखाई देरा--

ये एक रोड हे जिसपर अं कुछ लोग खड़े हुए हे एक मेल ग्रीन कलर का--

ऑटो है ऑटो का कलर ग्रीन और येलो कलर का है।

बादल सफेद कलर के है और खेत में एक टावर बना हुआ है टावर के पास एक पैड दिखाई दे रहा है।

ये एक छोटा सा गौशाला है जिसमें एक गाय बंधी हुई है गाय का रंग काला और सफेद है।

ये यहाँ एक फंक्शन चल रहीं हैं जहाँ डी_जे लगा हुआ हैं।

ये एक रोड दिखाई दे रहा है मुझे रोड पर एक --

ये एक मस्जिद दिखाई दे रहा है मस्जिद का रंग सफ़ेद है कुछ लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं।

पेंट शर्ट पेहेन रखा है और एक ने वाइट कलर का पेंट शर्ट पेहेन रखा है कुर्ता पजामा--

ये एक मूर्तियों कि दुकान है मूर्तियों के दुकान में कुछ भगवानो कि मुर्तिया रखी हुई है।

और कुछ भगवान् जी की पालने है झूले है।

यह एक टेबल है टेबल का रंग लाल है टेबल के ऊपर कुछ मछलियां है छोटी-छोटी कुछ मछलियां है मछलियों का रंग सफेद है।

यह एक चर्च है चर्च में एक ईशा मशिजी कि मूर्ति रंगी हुई है।

पा है जिसका रंग गोल्डन कलर का है एक मोर बनाहुआ है।

गीध है और एक दो कुर्सिय रखी हुई है कुछ परदे लगे हुए है।

यह एक होटल है होटल में काले और सफेद रंग का फर्श है कुछ सोफे रखे हुए हैं सोफो का रंग नीला है।

ये एक भगवान का रथ लिक निकला हुआ है रथ बहुत ही अच्छे फूलों से सजा हुआ है ऊपर लाल रंग का छुड़ा बना हुआ है।

यह एक पिंजरा है जो चिड़यो से भरा हुआ है।

पीछे खाली मैदान है वहा कुछ लोग खड़े हो कर पूजा देख रहे है।

केले के पेड़ है और नदी में बोहोत ही ज्यादा पानी है।

ये एक ब्री ब्रिज है ब्रिज के निचे बहोत सारे बहोत ही गहरा पानी है।